मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
दीपावली के छह दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है
जिसमें खानपान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है
छठपूजा का अनुपमपर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है
सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में हैं तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजनविधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियाँ हैं
आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का सन्देश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है
दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है लेकिन छठपूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है
हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है
छठ से पहले पूरे घर की सफाई साथ ही नदी तालाब पोखर के किनारे पूजास्थल यानि घाटों की भी सफाई पूरे जोश से सब लोग जुड़ करके करते हैं
सूर्य वंदना या छठपूजा पर्यावरण संरक्षण रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है
सामान्य रूप से लोग कुछ माँगकर लेने को हीनभाव समझते हैं लेकिन छठपूजा में सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परम्परा रही है
प्रसाद माँगने की इस परम्परा के पीछे ये मान्यता भी बतायी जाती है कि इससे अहंकार नष्ट होता है
एक ऐसी भावना जो व्यक्ति के प्रगति के राह में बाधक बन जाती है
भारत के इस महान परम्परा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात की सराहना भी होती रही है आलोचना भी होती रही है
लेकिन जब कभी मैं मन की बात के प्रभाव की ओर देखता हूँ तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इस देश के जनमानस के साथ मन की बात शतप्रतिशत अटूट रिश्ते से बंध चुकी है
खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए
गाँधी जयन्ती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए खादी के लिए वकालत करता रहता हूँ और उसका परिणाम क्या है आपको भी यह जानकर के खुशी होगी
मुझे बताया गया है कि इस महीने 17 अक्तूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग एक करोड़ बीस लाख रुपये की रेकॉर्ड बिक्री हुई है
खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पर इतना बड़ा बिक्री होना ये सुन करके आपको भी आनंद हुआ होगा संतोष हुआ होगा
दिवाली के दौरान खादी गिफ्ट कूपों की बिक्री में क़रीबक़रीब 680 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है
खादी और हैंडीक्राफ्ट की कुल बिक्री में भी पिछले वर्ष से इस वर्ष क़रीबक़रीब 90 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है
यह दिखता है कि आज युवा बड़ेबूढ़े महिलाएँ हर आयु वर्ग के लोग खादी और हैंडलूम को पसन्द कर रहे हैं
मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इससे कितने बुनकर परिवारों को ग़रीब परिवारों को हथकरघा पर काम करने वाले परिवारों को कितना लाभ मिला होगा
पहले खादी खादी फोर नेशन था और हमने खादी फोर फैशन की बात कही थी लेकिन पिछले कुछ समय से मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि खादी फोर नेशन और खादी फोर फैशन के बाद अब खादी फोर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ले रहा है
खादी ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति के जीवन में हैंडलूम ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए उन्हें सशक्त बनाने का शक्तिशाली साधन बनकर के उभर रहा है
ग्रामोदय के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है
श्रीमान् राजन भट्ट ने NarendramodiApp पर लिखा है कि वो सुरक्षा बलों के साथ मेरी दिवाली एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं और वे यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा बल कैसे दिवाली मनाते हैं
श्रीमान् तेजस गायकवाड़ ने भी NarendramodiApp पर लिखा है हमारे घर की भी मिठाई सुरक्षाबलों तक पहुँचाने का प्रबंध हो सकता है क्या हमें भी हमारे वीर सुरक्षाबलों की याद आती है
हमें भी लगता है कि हमारे घर की मिठाई देश के जवानों तक पहुंचनी चाहिए
दीपावली आप सब लोगों के लिए खूब हर्षोल्लास से मनायी होगी
मेरे लिए दिवाली इस बार भी एक विशेष अनुभव लेकर के आयी
मुझे एक बार फिर सीमा पर तैनात हमारे जाबांज़ सुरक्षाबलों के साथ दीपावली मनाने का सौभाग्य मिला
इस बार जम्मूकश्मीर के गुरेज़ सेक्टर में सुरक्षाबलों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए अविस्मरणीय रहा
सीमा पर जिन कठिन और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे सुरक्षाबल देश की रखवाली करते हैं उस संघर्ष समर्पण और त्याग के लिए मैं सभी देशवासियों की तरफ़ से हमारे सुरक्षाबल के हर जवानों का आदर करता हूँ
जहाँ हमें अवसर मिले जब हमें मौक़ा मिले हमारे जवानों के अनुभव जानने चाहिए उनकी गौरवगाथा सुननी चाहिए
हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे सुरक्षाबल के जवान न सिर्फ़ हमारे बॉर्डर पर बल्कि विश्वभर में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
उन पीसकीपर बनकर के वे दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं
अभी पिछले दिनों 24 अक्तूबर को विश्वभर में उन डे संयुक्तराष्ट्र दिवस मनाया गया
विश्व में शान्ति स्थापित करने के उन के प्रयासों उसकी सकारात्मक भूमिका को हर कोई याद करता है
और हम तो वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाले हैं यानि पूरा विश्व हमारा परिवार है
और इसी विश्वास के कारण भारत प्रारम्भ से ही उन के विभिन्न महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स में सक्रिय भागीदारी निभाता आ रहा है
आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और उन चार्टर की प्रस्तावना दोनों वे थे पियोपल इन्हीं शब्दों के साथ शुरू होती है
भारत ने नारी समानता पर हमेशा ज़ोर दिया है और उन डिक्लेरेशन ओएफ ह्यूमन राइट्स इसका जीताजागता प्रमाण है
इसके इनिशियल फ्रेज में जो प्रपोज किया गया था वो था अल्ल मेन एआरई बोर्न फ्री एंड इक्वल जिसे भारत की प्रतिनिधि हंसा मेहता के प्रयासों से चंगे कर लिया गया और बाद में स्वीकार हुआ अल्ल ह्यूमन्स बेइंग्स एआरई बोर्न फ्री एंड इक्वल
वैसे तो ये बहुत छोटा बदलाव लगता है लेकिन एक तंदरूस्त सोच का उसमें दर्शन होता है
उन अम्ब्रेला के तहत भारत ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है उन पीसकीपिंग आपरेशंस में भारत की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षा मिशन में भारत हमेशा बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है
आप में से बहुत लोग हैं जिनको शायद ये जानकारी पहली बार मिल रही होगी
18 हज़ार से अधिक भारतीय सुरक्षाबलों ने उन पीसकीपिंग आपरेशंस में अपनी सेवाएँ दी हैं
वर्तमान में भारत के लगभग सात हज़ार सैनिक उन पीसकीपिंग इनिशिएटिव्स से जुड़े हैं और ये पूरे विश्व में 3rd हाइस्ट नंबर है
अगस्त 2017 तक भारतीय जवानों ने उन के विश्वभर के 71 पीसकीपिंग आपरेशंस में से लगभग 50 आपरेशंस में अपनी सेवाएँ दी हैं
ये आपरेशंस कोरिया कैम्बोडिया लाओस वियतनाम कोंगो साइप्रस लाइबेरिया लेबनों सुदान विश्व के भूभागों में कई देशों में चले हैं
कोंगो और दक्षिण सुदान में भारतीय सेना के हॉस्पिटल में 20 हज़ार से अधिक रोगियों का इलाज़ किया गया है और अनगिनत लोगों को बचाया गया है
भारत के सुरक्षा बलों ने विभिन्न देशों में न सिर्फ वहाँ के लोगों की रक्षा की है बल्कि पियोपल फ्रेंडली आपरेशंस कर उनका दिल भी जीत लिया है
भारतीय महिलाओं ने शांति स्थापित करने के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है
बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत पहला देश था जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र के शांतिअभियान मिशन में फेमले पोलिस यूनिट भेजी थी
और देखिए भारत का ये कदम विश्वभर के देशों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया
और इसके बाद सभी देशों ने अपनीअपनी वूमेन पोलिस यूनिट्स को भेजना प्रारंभ किया
आपको सुन करके गर्व होगा कि भारत की भूमिका सिर्फ पीसकीपिंग आपरेशन तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत लगभग 85 देशों के आइटी फाइव कंट्रीज के पीसकीपर्स को प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहा है
महात्मा गाँधी और गौतम बुद्ध की इस भूमि से हमारे बहादुर शांतिरक्षकों ने विश्वभर में शांति और सद्भाव का संदेश पहुँचाया है
पीसकीपिंग आपरेशंस आसान कार्य नहीं हैं
हमारे सुरक्षाबल के जवानों को दुर्गम इलाकों में जा करके काम करना पड़ता है
अलगअलग लोगों के बीच रहना पड़ता है
भिन्नभिन्न परिस्थितियों और अलगअलग कल्चर को जाननासमझना पड़ता है
उन्हें वहाँ की स्थानीय जरूरतों माहौल के अनुरूप खुद को ढालना पड़ता है
आज जब हमारे बहादुर उन पीसकीपर्स को याद करते हैं तो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को कौन भूल सकता है जिन्होंने अफ्रीका के कैंगो में शांति के लिए लड़ते अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था
उन्हें याद कर हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है
वे एक मात्र उन पीसकीपर थे वीरपुरुष थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया
लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमचंद जी उन इंडिया पीसकीपर में से एक हैं जिन्होंने साइप्रस में विशिष्ट पहचान बनाई
1989 में 72 वर्ष की आयु में उन्हें नामिबिया में आपरेशन के लिए फोर्स कमांडर बनाया गया और उन्होंने उस देश की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान की
जनरल थिमैय्या जो भारतीय सेना के भी प्रमुख रहे ने साइप्रस में उन पीसकीपिंग फोर्स को लीड किया और शांति कार्यों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया
भारत शांतिदूत के रूप में हमेशा से विश्व में शांति एकता और सद्भावना का संदेश देता रहा है
हमारा विश्वास है कि हर कोई शांति सद्भाव के साथ जीए और एक बेहतर एवं शांतिपूर्ण कल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी पुण्य भूमि ऐसे महान लोगों से सुशोभित रही है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की है
सिस्टर निवेदिता जिन्हें हम भगिनी निवेदिता भी कहते हैं वो भी उन असाधारण लोगों में से एक थीं
वो आयरलैंड में मार्गरेट एलिज़ाबेथ नोबेल मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल के रूप में जन्मी थीं लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया
और निवेदिता का अर्थ है वो जो पूर्ण रूप से समर्पित हो
बाद में उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अपने स्वयं को सिद्ध करके दिखाया
कल सिस्टर निवेदिता की 150वीं जयंती थी
वे स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुई कि अपने सुखीसंपन्न जीवन का त्याग कर दिया और अपने जीवन को ग़रीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया
सिस्टर निवेदिता ब्रिटिश राज में होने वाले अत्याचारों से बहुत आह्त थीं
अंग्रेज़ों ने न सिर्फ हमारे देश को ग़ुलाम बनाया था बल्कि उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी ग़ुलाम बनाने का प्रयास किया था
हमारी संस्कृति को नीचा दिखा कर हम में हीनभावना पैदा करना यह काम निरंतर चलता रहता था
भगिनी निवेदिता जी ने भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित किया
राष्ट्रीयचेतना जागृत कर लोगों को एकजुट करने का काम किया
उन्होंने विश्व के अलगअलग देशों में जाकर सनातन धर्म और दर्शन के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचारों के खिलाफ़ आवाज़ उठाई
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं तमिल कवि सुब्रह्मण्य भारती अपनी क्रांतिकारी कविता पुदुमई पेन्न पुधुमई पेन न्यू वूमेन और महिला सशक्तिकरण के लिए विख्यात रहे हैं
ऐसा कहा जाता है कि प्रेरणा भगिनी निवेदिता ही थी
भगिनी निवेदिता जी ने महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु का भी सहयोग किया
उन्होंने अपने लेख और सम्मेलनों के माध्यम से बसु के रिसर्च के प्रकाशन एवं प्रचार में सहायता की
भारत की यही एक विशेष सुन्दरता है कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं
सिस्टर निवेदिता और वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु इसके सशक्त उदाहरण हैं
1899 में कलकत्ता में भयानक प्लेग हुआ और देखतेहीदेखते सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं
सिस्टर निवेदिता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए बिना नालियों और सड़कों की सफ़ाई का काम आरंभ कर दिया
वह एक ऐसी महिला थीं जो आरामदायक जीवन जी सकती थीं लेकिन वह गरीबों की सेवा में जुटी रहीं
उनके इसी त्याग से प्रेरणा पाकर लोगों ने सेवा कार्यों में उनका हाथ बँटाया
उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को स्वच्छता और सेवा के महत्व का पाठ पढ़ाया
और उनकी समाधि पर लिखा है हेरे रिपोज सिस्टर निवेदिता व्हो गेव हेर अल्ल टो इंडिया यहाँ सिस्टर निवेदिता विश्राम कर रहीं हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को दिया
निःसंदेह उन्होंने ऐसा ही किया
उस महान व्यक्तित्व के लिए आज इससे उपयुक्त श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती कि प्रत्येक भारतवासी उनके जीवन से शिक्षा लेकर स्वयं उस सेवापथ पर चलने का प्रयास करे
फोनकॉल माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा नाम डॉपार्थ शाह है १४ नवम्बर को हम बाल दिन के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो हमारे पहले प्रधानमन्त्री जवाहर लाल जी का जन्म दिन है उसी दिन को विश्व डायबिटीज दिन भी माना जाता है डायबिटीज केवल बड़ों का रोग नहीं है वो काफी सारे बच्चों में भी पाया जाता है तो इस चुनौती के लिए हम क्या कर सकते हैं
आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद
सबसे पहले तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु जी के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले childrenएस डे बाल दिवस की सभी बच्चों को बहुतबहुत शुभकामनाएँ
बच्चे नए भारत के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण हेरो हैं नायक हैं
आपकी चिंता सही है कि पहले जो बीमारियाँ बड़ी उम्र में आती थीं जीवन के अंतिम पड़ाव के आसपास आती थीं वह आजकल बच्चों में भी दिखने लगी हैं
आज बड़ा आश्चर्य होता है जब सुनते हैं कि बच्चे भी डायबीट्स से पीड़ित हो रहे हैं
पहले के ज़माने में ऐसे रोगों को राजरोग के नाम से जाना जाता था
राजरोग अर्थात ऐसी बीमारियाँ जो केवल संपन्न लोगों को ऐशओआराम की ज़िंदगी जीने वालों को ही हुआ करती थी
युवा लोगों में ऐसी बीमारियाँ बहुत रारे होती थीं
लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है
आज इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसॉर्डर के नाम से जाना जाता है
युवा उम्र में इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण है हमारी जीवनशैली में फिजिकल एक्टिविटीज की कमी और हमारे खानपान के तरीक़ों में बदलाव
समाज और परिवार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रुरत है
जब वह इस पर सोचेंगे तो आप देखिएगा कि कुछ भी एक्सट्राआर्डिनरी करने की ज़रुरत नहीं है
बस ज़रुरत है छोटीछोटी चीज़ों को सही तरीक़े से नियमित रूप से करते हुए उन्हें अपनी आदत में बदलने की उसे अपना एक स्वभाव बनाने की
मैं तो चाहूँगा कि परिवारजन जागरूकतापूर्वक ये प्रयास करें कि बच्चे खुले मैदानों में खेलने की आदत बनाएं
संभव हो तो हम परिवार के बड़े लोग भी इन बच्चों के साथ ज़रा खुले में जाकर कर के खेलें
बच्चों को लिफ्ट में ऊपर जानेआने की बजाय सीढियाँ चढ़ने की आदत लगाएं
डिनर के बाद पूरा परिवार बच्चों को लेकर के कुछ वाल्क करने का प्रयास करें
योगा फोर यंग इंडिया
योग विशेष रूप से हमारे युवा मित्रों को एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाये रखने और लाइफस्टाइल डिसॉर्डर से बचाने में मददगार सिद्ध होगा
स्कूल से पहले 30 मिनट का योग देखिए कितना लाभ देगा घर में भी कर सकते हैं और योग की विशेषता भी तो यही है वो सहज है सरल है सर्वसुलभ है और मैं सहज है इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है
सरल इसलिए है कि आसानी से सीखा जा सकता है और सर्वसुलभ इसलिए है कि कहीं पर भी किया जा सकता है विशेष टूल्स या मैदान की ज़रूरत नहीं होती है
डायबीट्स कंट्रोल करने में योग कितना असरकारी है इस पर कई स्टडीज चल रही हैं
एम्स में भी इस पर स्टडी की जा रही है और अभी तक जो परिणाम आए हैं वो काफी एन्कोरेजिंग हैं
आयुर्वेद और योग को हम सिर्फ उपचार ट्रीटमेंट के माध्यम के तौर पर न देखें उन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं
मेरे प्यारे देशवासियो खासकर के मेरे युवा साथियो खेल के क्षेत्र में पिछले दिनों अच्छी ख़बरें आई हैं
अलगअलग खेल में हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है
हॉकी में भारत ने शानदार खेल दिखाके एशिया कप हॉकी का ख़िताब जीता है
हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी के बल पर भारत दस साल बाद एशिया कप चैम्पियन बना है
इससे पहले भारत 2003 और 2007 में एशिया कप चैम्पियन बना था
पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को मेरी तरफ से देशवासियों की तरफ से बहुतबहुत शुभकामनाएँ
हॉकी के बाद बैडमिंटन में भी भारत के लिए अच्छी ख़बर आयी
बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क ओपन ख़िताब जीतकर हर भारतीय को गौरव से भर दिया है
इंडोनेशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद ये उनका तीसरा सुपर सीरीज प्रीमियर ख़िताब है
मैं हमारे युवा साथी को उनकी इस उपलब्धि के लिए और भारत के गौरव को बढाने के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
दोस्तो इसी महीने फिफा Under17 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ
विश्वभर की टीमें भारत आयीं और सभी ने फुटबॉल के मैदान पर अपना कौशल दिखाया
मुझे भी एक मैच में जाने का मौक़ा मिला
खिलाड़ियों दर्शकों सभी के बीच भारी उत्साह था
वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट पूरा विश्व आपको देख रहा हो
इतना बड़ा मैच मैं तो सभी युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा उत्साह कुछ कर दिखाने के जज़्बे को देखकर दंग रह गया था
वर्ल्ड कप का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ और सभी टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
भले ही भारत ख़िताब न जीत पाया लेकिन भारत के युवा खिलाड़ियों ने सभी का दिल जीत लिया
भारत समेत पूरे विश्व ने खेल के इस महोत्सव को एंजॉय किया और ये पूरा टूर्नामेंट फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोचक और मनोरंजक रहा
फुटबॉल का भावी बहुत उज्ज्वल है इसके संकेत नजर आने लगे हैं
मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को उनके सहयोगियों को और सभी खेल प्रेमियों को बधाई देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो स्वच्छ भारत के विषय में मुझे जितने लोग लिखते हैं मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं के साथ यदि मैं न्याय करने की सोचूँ तो मुझे हर रोज मन की बात का कार्यक्रम करना पड़ेगा और हर रोज़ मुझे स्वच्छता के विषय पर ही मन की बात को समर्पित करना पड़ेगा
कोई नन्हेंमुन्ने बच्चों के प्रयासों के फोटो भेजते हैं तो कहीं युवाओं की टीम इफोर्ट्स का किस्सा होता है
कहीं स्वच्छता को लेकर किसी इनोवेशन की कहानी होती है या फिर किसी अधिकारी के जुनून को लेकर आए परिवर्तन की न्यूज होती है
पिछले दिनों मुझे बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट मिली है जिसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर किले के कायाकल्प की कहानी है
वहां इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन नाम के एक एनजीओ की पूरी टीम ने चंद्रपुर किले में सफाई का अभियान चलाया
दोसौ दिनों तक चले इस अभियान में लोगों ने बिना रुके बिना थके एक टीमवर्क के साथ किले की सफाई का कार्य किया
दोसौ दिन लगातार
बेफोर और आफ्टर ये फोटो उन्होंने मुझे भेजे हैं
फोटो देख कर के भी मैं दंग रह गया और जो भी इस फोटो को देखेगा जिसके भी मन में अपने आसपास की गंदगी को देख कर कभी निराशा होती हो कभी उसको लगता हो कि स्वच्छता का सपना कैसे पूरा होगा तो मैं ऐसे लोगो को कहूँगा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन के युवाओं को उनके पसीनों को उनके हौसले को उनके संकल्प को उन जीतीजागती तस्वीरों में आप देख सकते हैं
उसे देखते ही आपकी निराशा विश्वास में ही बदल जाएगी
स्वच्छता का ये भगीरथ प्रयास सौन्दर्य सामूहिकता और सातत्यता का एक अद्भुत उदाहरण है
किले तो हमारी विरासत का प्रतीक हैं
ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की ज़िम्मेवारी हम सभी देशवासियों की है
मैं इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन के और उनकी पूरी टीम को और चंद्रपुर के नागरिकों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आने वाले 4 नवम्बर को हम सब गुरु नानक जयंती मनाएंगे
गुरु नानक देव जी सिक्खों के पहले गुरु ही नहीं बल्कि वो जगतगुरु हैं
उन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के बारे में सोचा उन्होंने सभी जातियों को एक समान बताया
महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान पर ज़ोर दिया था
गुरु नानक देव जी ने पैदल ही 28 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने सच्ची मानवता का सन्देश दिया
उन्होंने लोगों से संवाद किया उन्हें सच्चाई त्याग और कर्मनिष्ठा का मार्ग दिखाया
उन्होंने समाज में समानता का सन्देश दिया और अपने इस सन्देश को बातों से ही नहीं अपने कर्म से करके दिखाया
उन्होंने लंगर चलाया जिससे लोगों में सेवाभावना पैदा हुई
इकट्ठे बैठकर लंगर ग्रहण करने से लोगों में एकता और समानता का भाव जागृत हुआ
गुरु नानक देव जी ने सार्थक जीवन के तीन सन्देश दिए परमात्मा का नाम जपो मेहनत करो काम करो और ज़रुरतमंदों की मदद करो
गुरु नानक देव जी ने अपनी बात कहने के लिए गुरबाणी की रचना भी की
आने वाले वर्ष 2019 में हम गुरु नानक देव जी का 550वाँ प्रकाश वर्ष मनाने जा रहे हैं
आइए हम उनके सन्देश और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें
मेरे प्यारे देशवासियो दो दिन के बाद 31 अक्तूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मजयंती मनाएंगे
हम सब जानते हैं कि आधुनिक अखण्ड भारत की नींव इन्होंने ही रखी थी
भारत माँ की उस महान संतान की असाधारण यात्रा से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं
31 अक्तूबर को श्रीमती इंदिरा गाँधी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गईं
सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये थी कि वे न सिर्फ़ परिवर्तनकारी विचार देते थे लेकिन वे इसको कर दिखाने के लिए जटिलसेजटिल समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढने में क़ाबिल थे
विचार को साकार करना उसमें उनकी महारत थी
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोने की बागडोर संभाली
ये सुनिश्चित किया कि करोड़ों भारतवासियों को एक राष्ट्र और एक संविधान की छत्रछाया में लाया जाए
उनके निर्णय क्षमता ने उन्हें सारी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य दिया
जहाँ मानमनौवल की आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने मानमनौवल किया जहाँ बलप्रयोग की आवश्यकता पड़ी वहाँ बलप्रयोग किया
उन्होंने एक उद्देश्य निश्चित कर लिया और फिर केवल उसी ओर पूरी दृढ़ता के साथ वो बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए
देश को एक करने का ये कार्य सिर्फ़ वही कर सकते थे जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहाँ सभी लोग समान हों उन्होंने कहा था और मैं चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सदासर्वदा हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली हैं
उन्होंने कहा था जाति और पंथ का कोई भेद हमें रोक न सके सभी भारत के बेटे और बेटियाँ हैं हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और पारस्परिक प्रेम और सद्भावना पर अपनी नियति का निर्माण करना चाहिए
सरदार साहब का ये कथन आज भी हमारे न्यू इंडिया के विजन के लिए प्रेरक है प्रासंगिक हैं
और यही कारण है कि उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है
देश को एक अखण्ड राष्ट्र का स्वरुप देने में उनका योगदान अतुलनीय है
सरदार साहब की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर को देशभर में रुन फोर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा जिसमें देशभर से बच्चे युवा महिलाएँ सभी आयुवर्ग के लोग शामिल होंगे
मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी रुन फोर यूनिटी आपसी सद्भावना के इस उत्सव में भाग लें
मेरे प्यारे देशवासियो दिवाली की छुट्टियों के बाद नए संकल्प के साथ नए निश्चय के साथ आप सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में फिर एक बार जुट गए होंगे
मेरी तरफ़ से देशवासियों को उनके सभी सपने साकार हों ये शुभकामनाएँ हैं
बहुतबहुत धन्यवाद